इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग के छत में एक ग्रीन कलर का टीना लगाया हुआ है।

कुछ दूर में काफी पेड़ और पौधे नजर आ रहा है।

गाड़ी के चक्के के नीचे में प्लास्टिक भी दिख रहा है।

ऊपर में भी करेंट का तार दिख रहा है।

सामने में छोटे छोटे पौधे का पेड़ भी दिख रहा है।

सामने में तीन चार ऑटो भी दिखाई दे रहा है।

कपरा पकड़ के खड़ा हुआ है।

फोटो मे एक बिल्डिंग दिख रहा है यह बिल्डिंग में काफी बड़े बड़े खिड़की भी दिख रहा है।

ये चिड़ियों को एक पिंजरा में रखा हुआ है।

दाना को एक प्लास्टिक का टिफिन में रखा हुआ है ये चिड़िया काफी सुंदर दिख रहा है।

इसमें काफी सारे लाइट भी जल रहा है।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

टेबल के पास एक सफेद रंग का फ्रिज भी रखा हुआ है ऊपर में एक स्विच बॉक्स भी दिख रहा है।

नीचे में तीन चार पिलर भी दिख रहे हैं सामने में एक बाइक भी पार्किंग करके रखा हुआ है।

बाइक का पीछे में सीमेंट की ईटा भी रखा हुआ है।

ये फोटो में एक बिल्डिंग दिख रहा है।

दुकान के अंदर में काफी सारे लाइट भी जल रहा है।

फोटो में एक बड़ा सा चर्च दिख रहा है चर्च के ऊपर में जीजस का क्रॉस भी बनाया गया है कोने मे काफी सारे गाड़ी भी पार्किंग करके रखा हुआ है।

नीचे में भी काफी सारे पानी दिख रहा है।

सामने मे एक लाल कलर का गाड़ी दिख रहा है कोने में एक सफेद रंग का गाड़ी भी है।

पिक्चर में काफी बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

ऊपर में काफी सारे करंट का तार भी दिख रहा है।

तीन चार आदमी स्टेज में डांस कर रहा है।

पास में एक करेन्त का खंबा भी दिख रहा है।

उपर में काफी सारे लाइट भी जल रहे हैं।

टेबल के ऊपर में एक इंडिया फ्लैग भी रखा गया है।

दीवाल में क्यू_आर कोड भी चिपकाया हुआ है।

नीचे में एक सफेद रंग का टेबल और डेस्क भी रखा हुआ है।

कोने में सीमेंट का खंबा भी दिख रहा है।

कोने में फूल के पॉट भी लगाया हुआ है।

ऊपर में काफी सारे छोटे छोटे झूमर भी लगाया है।

रस्ते के बीच मे एक लड़का खड़ा हुआ है।

ये फोटो में काफी घर नजर आ रहा है।

यह फोटो में तीन बच्चा दिख रहा है ये तीनों रनिंग रेस कर रहा है।